यहाँ पे एक गांव हैं गांव में अ जौने पेड़ लगे हवे हैंगे जहाँ पौधे लगे हुए हैं --

लाल गुलाबी रंग पीले रंग का अँधेरा हैगा। हर रंग के कपडे पहने हुए हेंगे। लाइटे जल रही है।

कुछ आदमी लोग हैं एक आदमी एक औरत बाइक पे खड़े हुए हैं रोड पे अ-बादल वाइट कलर का है

यहां पे एक बैंक है। बैंक वाईट कलर का पुता हुआ है बोर्ड लगा हुआ हुइगा। अ धूप निकली हुई है पेड़ लगे हुए हैं। नीला आसमान है।